कुछ बच्चे भी इसे देख रहे हैं बच्चे आ बहुत मस्ती कर रहे जो सबको अच्छा लग रहा है।

बहुत सा व्यक्ति इधर उधर देख रहे हैं और सब अपने काम में लगे हैं एक और कार साइड में खड़ी हुई है और सब अपने काम--

उनके पास में एक बोतल भी रखी हुई है और व्यक्ति उसे देख रहें हैं यह योगा करने वाले टीचर ने ड्रेस और स्पोर्ट शूज पहन रखे हैं।

दो बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ रहे है एंड दो बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ रहे है रहे है एक आदमी उन्हें उठाकर चढ़ा रहा है।